त रास्ता भी दिखाई दे रहा है और एक भवन भी है जिसके ऊपर काफी पेड-पौधे हैं।

उसके ऊपर बोर्ड भी लगा हुआ हैं सामने एक बहुत बड़ा भवन दिखाई दे रहा है जिसकी खिड़कियाँ शीशे की नज़र आ रही हैं।

इस फोटो में आप देख सकते है की एक टेंपू नजर आ रहा है टेंपू पीले रंग का है उसके अगल-बगल काफी सारे बाइके और साइकिल दिखाई दे रहे है।

इस फोटो के अंदर एक लाल कलर का हाउस वाला मंदिर दिखाई दे रहा है जो काफी सुंदर दिखाई दे रहा है।

तथा नदी के बीचो-बीच भी एक छोटा-सा टापू दिखाई दे रहा है अगल-बगल काफी पौधे और भूमि दिखाई दे रहे।

और सामने की ओर थोड़ा थोड़ा पानी से भड़ी सड़क भी नज़र आ रही है। किनारे किनारे हरियाली है।

बगल मैं काफी बड़े-बड़े बगीचे और पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

इस फोटो में आप देख सकते हैं की एक बहुत बड़ा ग्राउंड नजर आ रहा है जिसके बीचों-बीच थोड़ा-थोड़ा रास्ते में तथा ग्राउंड के बीच एक बॉउंड्री भी कर रखी है।

इसके ऊपर भी एक छोटा सा भवन है बिल्डिंग टाइप का जिस पे छप्पर भी बन रखी है नीले कलर की तथा भवन के ऊपर बोर्ड भी लगा है कुछ टावर भी दिखाई रहे हैं।

गेट के दीवारें भी बहुत सुन्दर सजा रखी हैं तथा गी दीवार सफेद रंग की है। गेट की सीढ़ी नजर आ रही है।

इस फोटो में आप देख सकते है की एक व्यक्ति है जो सफ़ेद रंग की टी-शर्ट पेहेने है।